तस्वीर में हम बहोत कुछ देख सकते है जेसे की यहा पे एक पहाड़ है जिस की मिटटी सुखी है और इसके निचे गुजरते हुवे एक हमे रास्ता दिखाई देता है।